ईंटे का मकान है जो वाइट कलर से पेंट किया गया है और तीन छतरी भी है।

यह एक प्लांट है प्लांट करकट से बनाया गया है जो बुलु कलर है।

बहुत सारे पेड़ पौध भी है इधर एक आम का पेड़ है।

यह एक बैंक है बैंक के गेट खुला हुआ है जो काला कलर का है और बोर्ड के ऊपर--

यह एक बस स्टेश स्टेशन है जो बहुत सारे आदमी इंतजार कर रहे हैं बस --

यह एक रूम है। रूम जो कलर से पेंट किया गया है और एक बेड है व्हाइट कलर का जो उसमें दो तकिए हैं।

टेबल पर बिछाया गया है ब्लू और व्हाइट कलर से है। ऊपर टेंट गुलाबी और व्हाइट से है।

क्रीम कलर का और व्हाइट से पेंट किया गया है और ब्लू भी है अब बहुत सारे खिड़की है।

यह एक रूम है। रूम में बहुत सारे टेबल रखे है जो प्लास्टिक के है।